इस फोटो में नदी है नदी के बगल एक मेढ़ जा रही है तथा न मेढ़ के बगल में बहुत सारी बड़े- बड़े खेत दिखाई दे रहा है।

खुला आसमान और काफी बड़े बड़े पेड़ है।

इस फोटो के अंदर बहुत बड़ा मैदान है मैदान से कुछ लोग गाड़ी से या पैदल जा रहे है तथा एक बहुत बड़ा स्कूटर है।